एक लोहे का गेट नजर आ रहा है जिस पर सफेद कलर पुता हुआ है।

यहाँ पर पीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आइडिया लिखा हुआ है।

हमें पीछे कार भी नजर आ रही है बहोत सारी ।

यह इमेज एक जिम की है जहाँ पे नीचे लाल कलर का कारपेट बिछा हुआ है ।